ये वो जगह होती हैं जैसे जहाँं पर सब स्नान कर लेते हैं घूमने जाते हैं और रो-रोड के --

ये वो ग्राउंड होते हैं जहाँ पर बच्चे फुटबॉल क्रिकेट मैच योगा हर तरह का व्यायाम करते हैं और खेलते हैं।

ये एक बड़े-बड़े खेत होते है जहाँ पर द --